यहां पर सोफे लगे हैं और यहां पर एक लड़की भी खड़ी नजर आ रही है।

यहां पर दो कारे चलती दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक वार्ड दिखाई दे रहा हैं जहां पर बेड लगे नजर आ रहे हैं।

यहां सामने डबल डेकर ट्रेन खड़ी है और कुछ पैसेंजर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बाइक खड़ी नजर आ रही है और व्हाइट कलर की कार भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे सामने यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ पौधे लगे हुए है और यहां --

यहां पर गणेश मंदिर लिखा है और यहां पर लाइट्स भी जलती दिखाई दे रही है।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

इस इमेज़ में यहां पर सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है।